और एक बहुत बड़ी टंकी भी देख रहे है जिसमें पानी भरा जाता है।

वह चांदी के कलर की दिख रही है आप इसको दरवाजे को--

वी आई पी रूम दिख रहा हैं।